ये कम्पाउंडर साहब खड़े हुए हैं कोरोना में इसकी महत्व बहुत ज्यादा हो गई थी।

गाड़ी लगी हुई है इसमें सारे किराएदार लोग रहते हैं।

यहाँ औरतों का मसाज और आइब्रो कटिंग हर चीज़ की व्यवस्था है।

मोतिहारी का मदर डेयरी का प्लांट है।

यह एक कोविड स्कूल है |

इसमें सिम में कोई तरह का अगर इसु हो तो वहाँ हम लोग जाते हैं।